यहाँ पर बहोत ही खूबसूरत सजावट भी की गयी है सजावट के लिए यहाँ पर सजावटी मालो का इस्तामाल किया गया है देखने में यह अच्छा दृश्य है।

अन्य मूर्तियाँ भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है यह जगह देखने में काफी बड़ा नजर आ रहा है यह जगह मन को शांति देने वाला लग रह है।

इस चित्र में एक बैंक को दर्शाया गया है बाहर कई सारे बाइक स्कूटी सब रखे हुए हैं।

यहाँ पे एक व्यक्ति अपना चित्र लेते हुए दिखाया गया है बैक कैमरा में वो मिरर सेल्फी ले रहे है व्यक्ति के हाथ में एक एंड्राइड फ़ोन है उनके हाथ में एक एंड्राइड वाच है और पीछे एक व्यक्ति खड़े हुए है।